इस इमेज में एक ग्राउंड दिखाया गया है जिसमे बिल्डिंग जिसके सामने बिल्डिंग बनी हुई है इस ग्राउंड के बिच में तिरंगा लगा हुआ है।

एक व्यक्ति माइक के सामने कुछ बोलते हुए दिखाया गया है एक बाजू में स्टेज पर बैठा हुआ है पेटी बजता हुआ दिखाया गया है उस--

के लेफ्ट साइड में एक रेड कलर का हनुमान मंदिर दिखाया गया है उसके सामने तुलसी का वृक्ष लगा हुआ हैं पानी भरा दिखाया--

दिखाई गई है बहुत सारी क्रीम दिखाई गई है बहुत टेस्टी-टेस्टी क्रीम है इसमें पार्क टॉफ़ी दिखाई गयी हैं डेरी मिल्क डबल पीस भी इसमें दिखाई गयी है।

इस इमेज में मंदिर के अंदर जाने के लिए रास्ता दिखाया गया है ये मंदिर हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाने का रास्ता दिखाया गया है।

उसके बाजू में पेड़ लगाए गए हैं एक सड़क डायरेक्शन दिखाया गया है ब्लू कलर का बोर्ड --

इस इमेज मे एक शॉप की इमेज दिखाई गई है जिसमे कांच की रैक की रखी हुई है उसके ऊपर ब्रेड रखी दिखाई गई है बाजु मे एक कूलर भी रखा हुआ है।

इस इमेज मे एक शॉप दिखाई गई है जिसपर बहुत सारे पॉपकॉर्न रखे दिखाई गए है इसके बाजु मे भी एक भी एक शॉप है फर्नीचर लगा हुआ है।

'' एक लड़का कुछ उन ख़रीदता हुआ दिखाया गया है शॉप से शॉप के ऊपर चिल्ड्रेन्स बुक्स लिखा हुआ है। ''

इस इमेज में एक बहुत ही पतली सुरंग टाइप की गुफा दिखाई गई है जिसमे स--

इस इमेज में सरकती दोनों किनारे बहुत ही सुन्दर बॉट्स में ग्लोबल लगते हुए --